इस चित्र में हमें सफेद कलर का टेंट दिख रहा है।

में बहुत बड़ी मंदिर दिख रही है।

और इसमें बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है उसमें गेट लाइट भी लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा हॉल है।

और बहुत सारे आदमी खड़े हैं दो तीन बैठे भी हैं।

और एक स्टूल पे महाराणा प्रताप का फोटो लगा हुआ है घोड़ा पे बैठे हुए हैं।

चित्र मे बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है जो की हरा भरा घासों से भरा हुआ है और--

ये पीछे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं जिस--

और खंभा भी बना हुआ है और सरस्वती जी के मूर्ति भी रखे हुए हैं।

और बीच में एक छतरी लगा हुआ है उसके बगल में कुर्सी भी रखे हैं।

इस चित्र में हमें एक स्कॉर्पियो दिख रहा है।

और नीचे गेट भी लगा हुआ है और आगे लंबी चौड़ी सड़कें भी हैं दो।

इस चित्र में पीले रंग की मूर्ति दिख रही है जो पीले सोने और आभूषणों के रंगों से सज्जित है।

मिट्टी की जमीनें हैं और बगल में लोहे के कमियां खड़ी की गई--

यह किसी एक मंदिर का चित्र है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं।

और लोग यहां पे हाथ जोड़कर पूजा कर रहे हैं।

और इसमें लाइट भी लगे हुए हैं नीचे टाइल्स लगे हैं।

यह किसी एक पार्क का दृश्य जो कि बहुत हरा भरा घासें से भरा हुआ है।

वे एक कार्यालय जैसी दिख रही है।

यह किसी एक हवाई अड्डे का चित्र है जो कि यहां पे जहाज खड़ी हुई है।

कैमरक भी लगा हुआ है।

और इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं।

और दीवार पर गाढ़ा गुलाबी पेंट हुआ है उसपे लिखा है एल_जी ।

उसके नीचे सफेद कलर में पेंट हुआ किया गया है।

और ऊपर एक कैमरे भी लगे हुए हैं।

और हरा भरा पेड़ भी है और हाई वोल्टेज का तार भी गया हुआ है।